ये बहुत डेकोरेशन किया हुआ स्टेज है और यहां पे फ्लावर से डेकोरेशन हो रखा है।

वॉल पे पेंटिंग लगी हुई है साइड में शेल्फ बनी हुई है एक आदमी बैठा हुआ है।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है इसके ऊपर आई_फा लिखा हुआ है और नीचे साइड एक--

और कार खड़ी हुई है व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की और--

और पोल बने हुए हैं इसको पकड़ के चल सकते हैं।

नीचे बैठे हुए हैं राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है।

ये एक जहां पे एक ए_सी लगा हुआ है व्हाइट क--

टी शेल्फ बनी हुई है उसपे टेबल पे दो--

रखी हुई है सिंक रखी हुई है सामने वोल पे मिरर लगी हुई है और नीचे वॉश बेसिन लगा हुआ है और सैनिटाइजर रखा हुआ हैं।

इसमें लॉक भी लगी हुई है अलमारी सी बनी लगी हुई है उसके ऊपर कुर्सी टेबल रखी हुई है।

और एक बाल्टी रखी हुई है बाहर एक चेयर रखी हुई है। साइड में एक स्कूटर खड़ा हुआ है।

ई बहोत बड़ा किला बना हुआ है और सामने से बहोत सारे मैप लगी हुई है।

शीशे लगे हुए है शेल्फ में मेकअप का सामान रखा हुआ है।

और साइड में भी कार्टून्स में भी कपड़े रखे हुए हैं।

ये ज्वेलरी की शॉप है यहां पे बहोत सारे हार रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की जो सेल्फ में सजे हुए हैं।

ये ग्रीन कलर का दो दुकान सी बनी हुई हैं औ--

अंदर साइड पे ए जो कर्टनस लगे हुए हैं जो--

स पड़ी हैं जो ब्लैक कलर की है और साइड में एक बड़--

अंदर बहुत सारा सामान रख रखा हुआ है एक आदमी दिख रहा है दिन का--

और शॉप बनी हुई नीचे बाहर तीन गाड़ियां खड़ी हुई है एक ब्लैक कलर की दो वाइट कलर के पीछे ट्रक खड़ा हुआ है।

एक आदमी बाहर खड़े हुए हैं और एक अंदर खड़ा हुआ है।

गन की फायरिंग जा रही है लाइट की और आसमान ब्लू ब्लू दिख रहा है दिन का टाइम है बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है ज्यादातर मोस्टली वाइट कार खड़ी हुई हैं।

ये भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है और उसी के पास में एक बेंच पड़ी हुई है जिसमें एक लेडीज और एक जेंट्स बैठा हुआ है।

लेटर बॉक्स और सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसने पीले रंग की शर्ट पहनी टी शर्ट हुई है।

ये एल्यूमिनियम के गेट रखे हुएं हैं जो अलग अलग डिजाइन के गेट्स रखे हुएं हैं बाहर और एक--

नीचे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है और दो बाइक खड़े हुए हैं एक स्कूटी खड़ी हुई है।

पेड़ लगा हुआ है और ब्लू आसमान दिख रहा है दिन का टाइम है।

वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है अंदर साइड दो आदमी खड़े हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है यहां पे बहुत सारी लाइटिंग हो रही है और पीछे से--

बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है जहां पर ऑडियंस बैठी हुई है रात का टाइम हैं।

और कैमरे लगे हुए हैं सए और डांस परफॉर्मेंस हो रहा है।

में एक लड़की खड़ी हुई जिसने कॉस्ट्यूम पेहना हुआ--